एक दूकान है यह दूकान किताबों कॉपी पैन्सिल रबर कटर स्टेशनरी की सारी--

ज्वेलर्स की शॉप है यहाँ पर हमें अलग अलग किस्म के सिलव्हर्स मिलते है।

फिमेल जर्नल वोर्ड है जो की सफ़ेद रंग की से पुता हुआ है जिसमे सफ़ेद रंग की--

एक फूलों की की दुकान है यहाँ पर अलग अलग किस्म के अलग अलग तरह के रंग बिरंगे फूल मिल रहे है।